ब्लैक एंड व्हाइट का घर है।

ये एक कारखाना जैसा लग रहा है फैक्ट्री जैसा उसके आगे में आ ट्रंसपार्मर है जहाँ से लाइट सप्लाई किया जाता है।

कोई ऊपर चढ़ रहे है कोई उधर काम कर रहे है उधर कुत्ता भी सब भी दिख रहा है और इधर पानी है तालाब है।

एक प्लेट है जिसपे पराठे रखे हुए है।

यह एक घर का सीन है जहां पर ढालाइया हो रहा है अभी ढलाईय हुई नहीं है छड़ सब है सिर्फ लगा हुआ और रस्सी से है बंधा हुआ।

और आगे मिस्त्री उधर बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं और पाइप सब है जोड़ा हुआ जो लाइट का काम होगा इस पाइप में।

यहां रोड है रोड बस एक जा रही है इधर से एक कार आ रही है यहां बाढ़ आ चुकी है बहुत पानी लगी हुई है।

ये कोई घाट है। शाम का समय है। लाइट जल रही है मंदिर भी है। आदमी सब बहुत खड़े होके मंदिर ऊपर की तरह देख रहे हैं।

और ये वाइट कलर का सबसे अधिक मात्रा में है शायद और इधर से ब्लू कलर का भी है।